और इसके बाहर भी एक कार और खड़ी है।

और उसके बराबर में एक गेट भी लगा है।

और नीचे कुछ धसने सी हो रही है।

और वह ऊपर की तर ओर देख रहा है।

और एक कार भी खड़ी है और कुछ आदमी भी खड़े हैं।

यह एक कॉलेज है और जिसमें एक गेट लगा हुआ है।

यह एक स्कूल है और इसमें कुछ काउंटर रखे हुए हैं।

और एक बोर्ड भी लगा है।